यह एक दुकान है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है एक गाड़ी पे एक आदमी बैठा हुआ है वहां पर एक औरत भी है।

है एक दुकान है जो एक दवाई की दुकान है। इसके बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

इसके पीछे एक फाटक भी है | दुकान के ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।